ये एक होटल है जो की इसमें बहुत सारे कलर पोते हुए है ग्रीन ब्लू --

बिल्डिंग बनी हुई है जिसमे येलो कलर पुता हुआ है रेड कलर का पट्टा दिया गया है ऊपर एक बैनर लगा हुआ है नीचे दो मूर्तियाँ बनी हुई हैं और मूर्ति के बीच कुछ लिखा भी हुआ है।

ये एक बहोत सुंदर सी जगह है जहां पर बहोत सारे टेबल एंड कुर्सी रखी हुई है जो की --